लाइटें लगी हुई हैं और त्रिपाल से छेका हुआ है।

बाहर में दो आदमी खड़ा है।

अंदर में खाने का व्यवस्था किया गया है।

एक मैदान है मैदान में एक पेड़ पे एक लड़का चढ़ा हुआ है।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

पीछे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं स्कूल में बाउंड्री किया हुआ है।

एक घर का दरवाजा दिखाई दे रहा है ऊपर पेड़ पत्ते दिखाई दे रहे है।

ऊपर में छोटे बच्चो के कपड़े टंगे हुए है।

दुकान में दो आदमी बातें कर रहे हैं।

ये एक मैदान है मैदान में एक--

छोटे छोटे बहोत सारे बाइक लगे हुए हैं।

एक टोटो सीधे चला जा रहा है।

पीछे में रैक पे बहुत सारे सामानें रखे हुए हैं।

सभी लोग चप्पल खोल के नीचे रखे हुए हैं।

बहोत सारे लंबे-लंबे पेड़ भी हैं।

पीठ पे बैग ले कर के सीधे जंगल के तरफ चले जा रहे हैं।

एक दरवाजा है एक खिड़की है ऊपर में एक पंखे लगे हुए हैं एक लाइट जल रही है।